में एक पहाड़ दिख रहा है। पहाड़ बहुत सुंदर है।

ये एक मस्जिद है। मस्जिद बहुत बड़ा है।

मस्जिद है। रोज यहाँ पे बहोत सारे लड़के आते जाते हैं। मस्जिद के सामने की रास्ता में एक लड़की दिखती है।

पास बोहोत सारी पत्थर की टुकड़ा हैं।

कुछ बाइक्स स्कूटी भी है।

विद्यालय में एक हेल्थ कैंप हो ड़हा है। की फील्ड में तीन महिलें एक पोस्टर लेकर खड़ीं हैं।

कुछ बाइक भी खड़ा है पिटल के छात में एक पानी की टैंक है आस-पास में बहोत सारी पेर हैं।

जितके आसपास बहोत बड़ा-बड़ा पेड़ है। रोज यहां पे बहोत सारे लोग आती है। बहोत सारी बिल्डिंग है पेड़ भी है।

सारी पिक्चर है। भगवान की पिक्चर भी है। स्कूल बंद है।

में तीन लोग खड़ा है। एक लड़की भी है।

के आस-पास बैलून से सजा हुआ है।

ताकि आसपास बहोत सारी पेर भी है।

नोटिस भी है। सा नोटिस भी है। की केबिन में एक चेयर है।

यहां पर एक अनुष्टान हो रहा है|

दुकान के सामने एक साइकिल पड़ी हुई है। एक डस्टबिन है।

ये एक भारतीय स्टेट बैंक है। बैंक बहुत बड़ा है। रोज यहां पर बहोत सारे लोग आती जाती है।